मुझे यहाँ दो मंजिला बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इसके अंदर बहुत सारा आदमी सब है उसके बाहर में दो जनरेटर है बहुत बड़ा जनरेटर है एक जीप है एक कार है।

मझे यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे आदमी है।

राजा के ऊपर मुकुट रखा हुआ है और उसके पीछे कुछ बो बैनर टाइप का बना हुआ है जिसमें लिखा है बिहार दिवस समारोह।

मझे यहाँ एक बहुत पुराना दो-तीन गाड़ी दिखाई दे रहा है गाड़ी एक मोटरसाइकिल है एक कार है और एक गेट है यहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है आशीर्वाद भवन।

ब्लैक कलर का कार है और एक वाइट कलर का कार है यहाँ पे एक ए.सी. भी है और ऊपर पंखी पंखा लगा हुआ है।